हरे कलर के झाड़ नज़र आ रहे है |

लाइट पीली सफ़ेद और नीली कलर की दिख रही है।

एक आदमी हाथ की घड़ी बांध के खड़ा है उसने चश्मा लगाके रखा है।

एक थर्माकौल का बॉक्स रखा हुआ है उसमें मछलियाँ रखी हुई है।

पत्थर दिखाई दे रहे हैं पत्थर का कलर ग्रे भी दिखाई दे रहा हैं और कुछ पत्थर का कलर पीला और हरा दिखाई दे रहा हैं।

कमरे मे लाइट भी लगे हुई है कमरे मैं कुर्सियाँ भी रखी हुई है और कुछ टेबल्स भी रखे हैं ।

मंदिर मे खिड़की भी दिखाई दे रही है और भूरे कलर की सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है ।

माइक दिखाई दे रहा है ऊपर गुलाबी कलर के रिबन्स दिखाई दे रहें हैं कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं।

एक आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का कलर सफ़ेद और काला दिख रहा है सफ़ेद कलर की दुकान दिख रही है लाइट का खम्भा दिखाई दे रहा है |